यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य हैं। इसमें तीन चार खम्बे नज़र आ रहे हैं।

और इसके सामने एक पेड़ का छाया भी दिखाई दे रहा है।

इसके दोनों तरफ आधी-आधी दिवाल खिची गई है। पीछे भी दिवाल का घेराओ है। बीच में गोल घेर बनाया गया है और अगल बगल ईंट मिट्टी --

यह किसी रेलवे स्टेशन का फोटो है। इसमें दो पटरियां साफ़ दिखाई दे रही हैं।

इस दृश्य मे एक नदी दिखाई दे रही है। नदी का पानी बिल्कुल साफ लग रहा है।

उसपे परदे लगे है एक दो बोर्ड है और बल्ब भी जल रहे हैं।

इस फोटो में पीले हरे रंग के कई पर्दो से बड़ा अच्छा ही रास्ता बनाया गया है।

इसमें आगे लाल रंग के पर्दे भी लगाए गए हैं नीचे दो हरे और लाल रंग के दरी बिछाई गई है।

लैंप लगा हुआ है। पानी का पूल है। और कुर्सियां भी रखे हुए छोटे-बड़े बहुत सारे पौधे नजर आ रहे है।

इसके पीछे एक दीवार दिखाई दे रही है। बगल में छोटा सा पौधा भी नज़र आ रहा है।

इसके बोर्ड भी मलिक नर्सिंग होम ही लिखा है। इसके आगे गाड़ी है खंबा है। खंभे पर बोर्ड पर लगे हैं।

इस फोटो में बहुत सारे लाल और हरे रंग की कुर्सियां बड़ी ही व्यवस्थित ढंग से रखी गई हैं।

यह किसी नदी का फोटो है इसमें दूर-दूर तक पानी ही दिखाई दे रहा है।

और उसके बगल में लोहे के जालीदार घेराव भी हैं। सामने मैंदान के जैसा लग रहा है। कई वृक्ष हैं।

नीचे वाला सारा शीशे का दरवाज़ा है और दरवाज़े में बाहर का दृश्य नज़र आ रहा है।

फूल है बोरिया भी दिखाई दे रहा है। पीछे कितने समान टंगे हैं और ज़मीन पर भी रखे गयें हैं।

इसके आगे सीसा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है पीछे कई वृक्ष नज़र आ रहे हैं।